यहाँ एक शोरूम है। इसमें गाड़ी और बहुत सारा रूम और आदमी है एक ठो ऊपर में पंखा लगा हुआ है।

और एक रूम है रूम में भी गेट लगा हुआ है |

यहाँ एक बहुत बड़ा घर है और ये घर में खिड़की दरवाजा सभी लगा हुआ है और एक ठो बोलेरो गाड़ी भी लगा हुआ है और तिरंगा का झंडा भी फहर रहा है। --